बहुत सारे पेड़ ऑन भी दिख रहे है घास उगती हुई दिख रही है।

लोहे के खम्भे दिख रहे है बीच में एक झरना दिख रहा है बादल दिख रहे है।

बहुत सारे क्रीम रखे हुए दिकत रहे है पाउडर रखे है कांच लगे हुए दिकत रहे है।

एक पन्नी डली हुई दिख रही है पीछे एक जाली बनी हुई दिख रही--

पेड़ दिखत रहे है लोहे का ख--

काजूकत दिखत रही है दुय तीन सफ़ेद कलर की कुर्सीओन दिखत रही है।

ये एक नदी दिखत रही है ओकर साइड में बहुत सारे पेड़ोंन दिखत रहे --

साइड में एक और ऊपर गेट है बाइक खड़ी हुई दिखत रही है।

कुछ लकड़ी के पतरे भी लगे हुए दिखत रहे है नीचे--

खिड़कियाँ दिखत रही है पीछे कुछ पेड़ ऑन दिखत रहे है।

अंगूर रखे हुए दिखत रहे है।

जाली लगी हुई दिखत रही है एक चद्दर का टिन शेड बना हुआ दिखत रहा है।